ब्राउन कलर दिख रहा है यहाँ पे रेड शेड में यहाँ पे छोटे- छोटे झाड़ दिख रहे है ऐसे ग्रीन कलर के झाड़ दिख रहे है यहाँ पे साइड यहा पे छोटा सा पहाड़ दिख रहा है जो पहाड़ के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे झाड़ उगे हुये है और ऊपर यहा पे नीला आसमान दिखाई दे रहा है और सफ़ेद बादल देख सकते।

पर एक सफ़ेद बादल दिख रहे है जो की नीले आसमान में गेरे हुये है यहाँ पे सामने बहुत सारे बड़े झाड़ दिख रहे हे जो की ग्रीन करके दिख रहे है यहा पे छोटे-छोटे झाड भी दिख रहे है यहां पे ग्रीन कलर के रेड शेड में भी एक बडे झाड दिख रहे है ग्रीन कलर के।

एक हम एक झाड़ दिख रहे है यहाँ पे हम झाड़ पे पूरी डाली नही दिख रही है और यहाँ पे ब्राउन कलर झाड़ दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साईड में भी--